ये गाड़ी है ये एक सड़क है साइड में गाड़ी रखी हुई है पीछे से बोहोत से ठेले वाले हैं।

गिटार है पियानो है हेलमेट है तबला है यह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान है।

एक गाय हैं और उसका बच्चा है सामने घास रखी हुई है।

साइड में कुर्सियां हैं उनके ऊपर लिफाफा लगा हुआ है।